और यहां पे इन इधर रेलिंग भी लगी हुई है और उधर आदमी भी बहुत दिख रहे हैं।

और उधर बिल्डिंग भी बहुत सारी दिख रही हैं ऊपर नारियल का पेड़ बहुत सारी हैं।

और इधर में भी छोटा भी फोन है और इधर एक डिब्बा भी रखी हुई है।

और ई इधर भी बहुत सारी मोबाइल है और रेड कलर का भी पट्टी मारा गया है।

यहां पे एक रोड भी बना हुआ है वहां पे बहोत सारे आदमीन भी है यहां पे रस्सी भी बांधी गई है।

उधर पेड़ भी दिख रहा है ऊपर में तार भी दिख रहा है उधर भी लोहा का पटरी दिख--

और उधर फोटो भी एक दिख रहा है एक जार भी।

और ऊपर में बादल दिख रहा है उधर बाहर में पोस्टर भी दो ठो टांगा गया है।

और यहां पे बच्ची बहोत सारे बच्चे है और सब अपने अपने बेड पर मतलब बना रहे योगा कर रहे हैं।

उधर बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है और उधर पहाड़ भी बहोत दिख रहे बड़ा बड़ा है।

और उधर रोड भी है इधर एक ड्रम भी रखा हुआ है और इधर एक बाल्टी भी है और इधर छड़ी भी है।

यहां पे एक मरीज दिख रहे हैं और उसके हाथ भी टूटा हुआ है।

और एक आदमी भी है और इसमें कैची भी रखी हुई है और नीचे में नीचे में कॉपी भी बहुत सारी रखी हुई है।

है और बहुत एक गुड्डा भी दो ठो लगी हुई है और इधर सारे बहुत आदमी भी हैं और--

और ऊपर में एक मीटर भी दिख रहे हैं और इधर फूल भी बहुत सारे दिख रही है और उधर गमला भी दिख रहे हैं।

और यहां पे एक आदमीन भी है ऊपर में लोहा कई है और--

उसमें घास भी है और इधर एक आदमी भी दिख रहे हैं उधर बहुत सारी आदमी भी है।

और एक दीवाल भी उधर मर गया है और एक घर भी दिख रहा है उधर पहाड़ भी दिख रहे हैं उधर टावर भी दिख रहे हैं।

उधर पेड़ भी दिख रहे हैं बहोत सारे हैं और इधर एक टेंपो भी है जो एक आदमी चढ़ा हुआ है उसी पर।

और एक जेंट्स भी इधर है बैठा हुआ है और उधर बांस भी एक लगा हुआ है।

यहां पर एक बारात का स्टेज लगा गया है और यहां पर जयमाला वाला कुर्सी भी है और--